ये एक जगह है और यहा पे बहोत सारे पेड़-पोधे लगे हुए हैं हरे-हरे घास हैं।

ये एक जगह है और यहाँ पे कुछ दुकाने लगी हुई हैं यहाँ पे --

और नीचे मॉल है उसमे काफी लाइट जल रही हे और कुछ कपडे लगे हुए हैं।

और यहाँ पे बहोत अच्छा डेकोरेशन हे और यहाँ पे कुछ पत्ते हैं।

ये एक इन्सान है इसने पर्पल रंग की शर्ट पहनी हुई है और इसमें काले रंग का चश्मा लगाया हुआ है।

और इसके आस-पास काफी सारा किताबे रखी हुई हैं।

यहाँ पे हरे रंग का टेबल हे और यहाँ पर काफी सारे छोटे-छोटे लाइट्स जल रहे हैं।

ये एक जगह है जहां पे एक इंसान बैठा हुआ है जिसने ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है इसके हाथ में एक चीज हैं जो --

और ये दुकान है और इस दुकान पे का कुछ और यहाँ पे सफ़ेद रंग की टंकी लगी हुई है।

ये एक घर है और इस घर के बाहर दो इंसान बैठे हुए हैं।

ये एक डांस क्लास है और यहाँ पर सब डांस सीखते हैं।

किसकी है और इसमें भी कागज़ भरा हुआ है वो सब पोस्टर लगा हुआ है और यहाँ पास में --

ये एक जगह है यहाँ पे काफी बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

बाहर जो पेड़ हैं वो हरे रंग के हैं और यहाँ पे छोटे-छोटे घास भी लगे हुए हैं।

और यहां पे स्टील की सीढ़ी है और इस शटर का कलर ब्लू कलर का है।

ये एक जगह है यहाँ पे काफी सारे लोग हैं और यहाँ जमीन पे कुछ सामान रखा हुआ है।

और यहाँ पे बहोत सारे लोग हैं जो नीचे जमीन पर बेठे हुए हैं।

सफ़ेद रंग का घर है और यहाँ बोर्ड में कुछ लिखा हुआ है।

यहाँ पर बहुत बड़ा --